यहां पर कु एक महिला खड़ी है और पीछे की तरफ दूसरी एक और महिला खड़ी है जिन्होंने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई है।

और मंदिर का गुंबद ऊपर बना हुआ है।

यहां पर एक बिल्डिंग है जिसमें लिखा हुआ है पल परिवार कल्याण संस्थान पटना।

जिसने शर्ट पहनी हुई है उसने सफेद रंग की पगड़ी लगाई हुई है कुछ पेड़ हैं हरे रंग की पीछे के तरफ दिख --

और जिसमें पानी की तरंगे दिख रहीं हैं और पीछे के पेड़ों की परछाई भी पानी में दिख रही है और किनारे की तरफ पीछे दूसरी तरफ पेड़ है।